सामने में टेबल पे एक चीज़ रखी पड़ी एक

रखा हुआ है

इससे बना हुआ है ग्राउंड अंदर में इस लोहे का बना हुआ --

ये का मूर्ति बना हुआ है गोल्डन कलर का।

यहाँ पे एक घर दिख रहा है वाइट और कुछ उम गोल्डन कलर का ब्राउन कलर का भी --

यहाँ पे एक कंप्यूटर जैसा दिख रहा है।

घोरा है कमती है घोरा --

यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रहा है सीधा पे --